यह फ़ोटो एक केंटिन या एक वेटिंग रूम का हो सकता है अ जिसमे सभी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं।

ये फोटो किसी सुपर मार्केट की अंदर की है | जहाँ पे --